और कैंटीन के बाजू में एक पेड़ दिखाई दे रहा है तथा कैंटीन के सामने कुछ खाली जगह छुटी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन आती हुई भी दिखाई दे रही है तथा ये रात का समय है।

और भी स्टम्प लगा हुआ है दोनों साइड घासे तथा बीच में खाली जगह छुटी है।

इस शॉप में नीचे की और दो स्टेचू खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तथा आगे की और एक बाइक भी दिखाई दे रही हैं वही एक --